संस्थान के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा है।

इस इमारत में काफी दुकाने भी हैं।

बाहर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा है।

सुंदर बालकनी बनी हुई है।